बहुत ही अच्छा ज्ञान देत ह जो भी बनवावत है लइका मन थे ये जगह भी अच्छा है खिड़की भी अच्छा देखत हवे जो भी है बहुत अच्छा हैं।

और अच्छा दिखत भी है लोकेशन भी अच्छा कार्या है लैकिया है लड़का है बहुत ही अच्छा काम करत है जो करत हैं।

बादल भी दिखाई देत ह बाइक वाला आये जेए वाला भी दिखत ह बहुत ही अच्छा है बस। .

बहुत अच्छा रोड दिखत हय गणतंत्र दिवस द्वारा गणतंत्र द्वार बहुत अच्छा दिखत हय जो कि टेंपो भी है।

बहुत अच्छा जगह दिखत है अभी पेड़ भी अच्छा दिखत ह।